लड़की भी दिखाई दे रहा है और लड़का भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में पंडाल दिखाई दे रहा है।

जो ये बैंक दिखाई दे रहा है जो की प्रधान बैंक लिख के है।

जो की ब्लू और ब्लैक कलर में नजर आ रहा है मुझे और ये शोरूम का अंदर जो है मुझे व्हाइट कलर में नजर आ रहा है।

एक जो है थोड़ा येलो कलर में दिखाई दे रहा है और एक जो है वह ब्लैक कलर में है।

और यह अलमारी के जैसा अंदर में प्लास्टिक पैकेट में कुछ दिखाई दे रहा है।

और इसमें जो बाहर में जो है बुहत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

जो कि रेड कलर में न नजर आ रहा है मुझे।

ग्रीन कलर में और इसमें जो लोहा का फेसिंग दिखाई दे रहा है वाइट कलर में और बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

उसमें जो है सब्जी वाला भैया भी एक ठो दिखाई दे रहा है।

और साइड मे जो है बैंक भी दिखाई दे रहा है जो कि प्रधान बैंक है।

और इस तस्वीर में मुझे सोफा भी नजर आ रहा है।

पीछे मे जो है दो ठू लाइट है।

जो इसमें घर दिखाई दे रहा है और ये घर जो है ग्रे कलर में देखने को मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे कपड़ा दिखाई दे रहा है और ये जो एक कपड़ा का दुकान है।

जो की वाइट कलर में नजर आ रहा है और ऊपर में जो स्काई दिखाई दे रहे है जोकि ब्लू कलर में है।

और इसमें जो है मिट्टी का अंदर में घर बनाया है जैसा दिखाई दे रहा है।

और इसमे जो ये अलग अलग आइटम्स है।

इस तस्वीर में मुझे आदमी भी दिखाई मिल रहा है।

और इसमें जो हैं बहुत सारे सामान दिखाई दे रहा हैं जैसे कि इसमें चम्मच जैसा भी दिखाई दे रहा हैं।